पीछे काउंटर बना है काउंटर पे कुछ गोल-गप्पे रखे हुए दिख रहे हैं उसके अंदर फूलों पड़े दिख रहे हैं साइड में कुछ बक्से रखे हुएबक्सों के ऊपर कुछ सब्जियों के रखा दिख रहा हैं टोकरियों में रखा दिख रहा हैं।

फलों को सजा के रखा गया दिख रहा है जिसमें ऑरेंज है संतरा और कुछ पाइनएप्पल कुछ रखा गया दिख रहा है पास में कुछ रखी गई है और कुछ टोकरिया बनी हुई दिख रही है।

पहाड़ पर बहुत सारे पड़े दिखाई दे रहे है कुछ पेड़-पौधे दिखाई दे रहे है बाइको को स्टैंड पर खड़ा कर के रखा दिख रहा है और बाइको के ऊपर हेलमेट दिख रहे है और पीछे पानीनुमा कोई हिस्सा दिखाई दे रहा है।

सामने कुछ तरबूज केले और पत्ता गोभी और कुछ पाईनएप्पल रखे गए दिख रहे जिसमें लोहे की रेलिंग लगी दिख रही पीछे गुलाबी और हरे कलर के लकड़ी की एक बॉक्स बना हुआ दिख रहा है जिसमे कॉपी रखी दिख --

जो मुसिक के इंस्ट्रूमेंट दिखाई दे रहे हैं जिसे अंदर पियानो दिखाई दे रहा है और कुछ सितार सितार जैसा दिखाई दे रहा है।

सामने कुछ लकड़ी की पत्तियाँ दिखाई दे रही हैं और दो तीन बैग दिखाई दे रहे हैं एक काला कलर का बक्सा दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर पीले कलर की पट्टी लगी और कुछ लोगो बना दिखाई दे रहा है और सामने पियानो रखा दिखाई दे रहा है उसके अंदर सफेद और काले बटन दिखाई दे--

किसी हिल स्टेशन का फोटो दिखाई दे रहा है जहाँ से छोड़ा छोटा सा एक झरना बहता हुआ दिखाई दे रहा है पत्थर की शिलाओं पत्थर जैसी आकृति बनी हुई दिख रही है पत्थर को काट के झरना साइड से बहता हुआ दिख रहा है।